ऑटो का इंतजाम भी कर रहे है यहाँ पे एक बूढी औरत है जो मदद मांग रही है बहुत सारे लोग अपने में ही व्यस्त हैं यहां पर एक साइकिल भी है जो की लोगों के लिए मददगार हो रहा है।

वहां पर बहुत सारे व्यक्ति श्रद्धा अपने आप पूजा करने के लिए आए हुए हैं बहुत सारे व्यक्ति इधर से उधर जा रहे हैं इसके आजु-बाजु में बहुत सारे बड़े-बड़े मकान भी है जहां पर --

पौधे उगाए जा रहे हैं बहुत सारे आस-पास घर भी है और यहाँ पर बहुत सारे ब बच्चे आकर खेलते भी है शाम में और यह जगह बहुत ही सुंदर है और मनमोहक भी है इसके आस-पास बहुत बड़े-बड़े पोल भी लगे हुए है।

ये एक पुराना सा और बोहोत ही छोटा रेलवे स्टे स्टेशन है और जहां पर एक बोहोत पुरानी गाड़ी खड़ी ट्रैन गड़ी खड़ी हुई है।

यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति नाच गाने के साथ डी.जे. के साथ और इनको पानी में भसाने के लिए ले जा रहे हैं और बहुत सारे व्यक्ति अअ बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक घर है जहां बहुत सारे बल्ब लगे हुए है शायद यहाँ पे एक शादी समारोह होने वाली है।

फूल भी पौधे भी है अ अ यहां स्पेशली नदी में ही उ अ उसका उत्पादन होता है और इससे इससे न इससे नदी बोहोत ही प्र प्रदूषित हो होती है और यह लोगों के लिए सही नहीं है।

जो व्यक्ति का बस है जहां पर लोगों को सुविधा के लिए उपलब्ध कराई गई है इसको पूजा कराने के लिए एक व्यक्ति अ पंडित के पास लाया है।

बिग मार्केट है जहां पर बहुत विभिन प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हो सकती है।